सारे आइसक्रीम उपलब्ध है।

गार्डन है।

यहां मुझे दिखाई दे रहा है डिवाइडर के उस पार पेट्रोल भारत पेट्रोलियम पंप है जहां से एक इंसान अ लूना में जा--

पिंक कलर का कपड़ा पहने हुए खड़े हैं यहां बहुत सारी ज्वेलरी --